पिक्चर मै सामने एक एरोप्लेन दिखाई पड़ रहा है जो की व्हाइट कलर का दिख रहा हैं। सामने एक लोहे का खंभा दिखाई पड़ रहा है जो कि ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है नीचे फुटपाथ दिखाई पड़ रहा है जो कि ग्रे कलर मे दिख रहा है। साइड मे कुछ घास दिखाई पड़ रही है जो कि ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है।

सामने एक फुटपाथ दिखाई पड़ रहा है जो ग्रे कलर में दिख रहा है। सामने एक औरत जा रही है उसने पिंक कलर के कपड़े पहन रखे हैं सामने कुछ लोहे का बना हुआ है स्टैंड की तरह जो --

ऊपर आसमान का रंग ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है और बादल दिख रहे हैं जो की वाइट कलर में दिखाई पड़ --

सामने एक मकान जैसा दिख रहा है जो की दुकान में बना हुआ है रेड और वाइट कलर में दिख रहा है यहाँ जीने दिखाई पड़ रहे हैं जोकि ग्रे कलर में दिख रहे हैं सामने एक ट्रैक्टर दिखाई पड़ रहा है जोकि --

एक रोड दिखाई पड़ रही है जोकि ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है। सामने एक ब्लू कलर का बोर्ड दिखाई पड़ रहा है। पीछे एक दीवाल दिखाई पड़ रही है जोकि ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रही है।

में एक मशीन दिखाई पड़ रही है जोकि व्हाइट कलर की है। वहाँ पे कुड़ादान का डब्बा रखा है जोकि ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रहा है। नीचे ग्रे कलर की ज़मीन दिखाई पड़ रही है। सामने सीढ़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं जोकि ग्रे कलर दिख रही हैं।

और लाइटें भी जली हुई है। साइड में कुछ कांच के दरवाज़े जैसा दिखाई पड़ रहा है। ऊपर लाइटें वाइट कलर और नीचे ग्रे कलर की ज़मीन जैसा दिखाई पड़ रहा है।

जो कि ब्लैक कलर में दिख रहा है। एक तम्बू जैसा भी दिखाई पड़ रहा है जो कि ब्लू कलर में है।

यह एक फुटपाथ जैसा दिख रहा है। इसमे पत्थर बिछे हुए हैं जो कि ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है। साइड में कुछ गोल-गोल ड्रम जैसा बना हुआ है जो कि गोल्डन कलर में दिखाई पड़ रहा है।

एक कार दिखाई पड़ रही है जो कि सिल्वर कलर में दिख रही है। नीचे जमीन ग्रे कलर और आधी ब्राउन कलर ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है। सामने कुछ पेड़ दिख रहे हैं जो कि ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहे हैं।

सामने कुछ फूल के पेड़ लगे हुए हैं जो कि रेड कलर के दिख रहे हैं। सामने एक कार भी खड़ी हुई है जो कि वाइट कलर में दिख रही है। सामने कुछ लोग और दिखाई पड़ रहे हैं। सामने एक बोर्ड जैसा दिख रहा है।

एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है जिस पर शीशे लगे हुए है जो की चमक रहा है सामने से कुछ तार जाते दिखाई पड़ रहे है। खम्बा दिखाई पड़ रहा है। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जो की वाइट कलर का दिख रहा है नीचे ब्लैक कलर का दरवाज़ा दिखाई पड़ रहा है जो की खुला है वहाँ पर एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है उसके सामने एक छोटा सा घर बना हुआ है। उसमे खिड़की दी हुई है जो कि आधा बना हुआ है। सामने का हिस्सा ग्रे कलर में दिख रहा है और उसकी ईंटे ऑरेंज कलर में दिखाई पड़ रही है। एक बाल्टी रखी हुई है जो कि ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है।

सामने एक ब्लैक कलर का बोर्ड जैसा लगा हुआ है सामने उसमें कुछ लिखा हुआ है। नी --

नीचे जमीन ग्रे कलर और ब्राउन कलर में दिखाई पड़ रही है। सामने एक बिल्डिंग जैसा बना हुआ है वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जो कि वाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है | वहाँ पर एक लाइट भी जल रही है।